इ कहा के है इ भी लगा हेय कोय होटल उटल के हके केतना सारा आदमी हेय बर्थडे पार्टी हेय की मीटिंग हेय की शादी उदी है समझ में ना आप रहा ऐसन है की --